टी-शर्ट पहनी हुई है जिम के अन्दर कुछ और समान रखा हुआ है।

बड़ी सी सफेद रंग की ऊंची सी बिल्डिंग बनी हुईई-- है। उस बिल्डिंग में बहुत सारी लाइटें जल रही है।